मुझे एक लड़का दिख रहा है। उसने हरी कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। ब्लू कलर की उसकी आउटफिट है।

मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है उसमे खूब सारी लाइटिंग लगी हुई है। एक छोटी सी मुझे एक गाड़ी दिख रही है। गाड़ी के जस्ट पास में एक बंदा बैठा हुआ है कुर्सी लगा के।

एक तरबुज दिख कुछ तरबुज दिख रहे हैं। कुछ कच्चे केले दिख रहे हैं। कुछ फूलगोभी दिख रहा है। कुछ पाइनएप्पल दिख रहें --

शैम्पू भी दिख रहे हैं मुझे। शैम्पू की नीचे कुछ और बॉक्स दिख रहे --

मुझे एक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया दिख रही है। उसके बाहर बोहोत से लोगोन खड़े हुए हैं।

में काउंटर दिख रहा है। एक शटर दिख रही है। शटर दो भाग में बटी हुई है। एक शटर का कलर चोकलेटी है। एक फर्श पे कुछ टाइल्स लगी हुई --

मुझे एक बस दिख रही है जो की स्कूल टूर लिखा हुआ है उस बस पे । उसमे एक आदमी खड़ा हुआ है हरे कलर का झंडा लेके। एक आंटी खड़ी हुई है।

दिख रहा है। बहोत बड़ा सा नदी दिख रही है। कुछ लोग खड़े हुए है जोकि न हाथी को निलाह रहे हैं बड़े देर से।

मुझे तीन दुकान दिख रही है। उसमें से एक में भारतीय स्टेट बैंक लोकसेवा केंद्र है। उसमें बहोत सारी महिलाएं --

मन्दिर सफेद कलर के बने हुए ज हैं खूब सारे मन्दिर सफ़ेद कलर के हैं। एक मंदिर है जो पीले कलर का बना हुआ है।